इदर दिखाई दे रहा है एक जिम सेंटर है।

इधर रैट कलर का करपीन है।

न वो ट्रैन को भी अच्छा लगरा ट्रैन कही जायेगा।

इधर दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा सैलून है।

जो बहौत ही स्टाइल से लगा हुआ है अभी भी जो टीन है।

इधर दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा पेट्रोल पंप है जो पेट्रोल पंप --

इदर दिखाई देरे हैं बहार में एक बड़ा सा पेड़ जो बून है उधर --

ये जो दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा बिल्डिंग जो अभी भी कम्पलीट नहीं हुआ।

पूरा का पूरा साइकिल से भरा हुआ है एक रोड पे बहौत ही अच्छा लग रहा है दिखने में खूबसूरत।

चोल करने के लिए और कटिंग करने के लिए इदर दो लोग हैं एक बोसरस सब कुछ लाइट फेम यमं दो लोग बैठें हुए हैं।

जो एक छोरि बना हुआ है एक फुलदणी बना हुआ है एक छोबराका दोरी बना हुआ है।

बहोत ही अच्छा लग रहा है देकने में सामने एक पेड़ है छोटा सा जिसका --

एक मैसी लगा हुआ है मैसी अभी तक कम्पलीट नहीं हुआ है।

इधर दिखाई दे रहा है मंदिर में अभी भी पूजा चल रही है।

इधर बहुत दुकान है बहुत कुछ है इस दुकान में।

जो बिल्डिंग के नीचे स्विमिंग पूल है इधर बहुत बड़ा टूल है रेड कलर का दो लोग जो स्विमिंग पूल मै नी पानी में तैर रहा है।

जो एक कैमरा का जो लेंस होता है लाइट होता है ओ लगा हुआ है।

दो एक लड़की के लड़की के बहुत ही अच्छा लग रहे है बहुत सारे रोज है इधर।

उसके उपर एक ब्रिज है ब्रिज के उपर एक साईकल लगा हुआ है एक आदमी कुछ ले जा रहा है सामान-बिमान।

यहां पर बहौत सारा टूरिस्ट बस आते हैं लगता है देखने के लिए।

गाड़ी बहोत ही अच्छा माइल देता है बहोत ही दूर जाता है गाड़ी।

इधर दिखा दे रहा है एक बैंक है बैंक के आगे एक लड़का है जो झाडू लगा रहा है।